नीचे कुछ गमले भी लगे हुए हैं।

जिस पे लिखा हुआ है आओ बच्चों टॉय हैं।

जिसपे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखा हुआ है सामने बाइक भी खड़ी हुई है रोड पर।

इस इमेज में भी एक नर्सरी दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं।

जो बोहोत ही खूबसूरत लग रही है।

लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और बिजली का तार भी नजर आ रहा है।